यहां पे टू कॉपी भी और आधार कार्ड भी किए जाता है और यहां पे कुछ कम पैसे भी लगते हैं।

यहां पे बहुत सारे लड़के हैं एवं एक या दो या एक या दो लड़के भी हैं जो--

लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं और यहां पे चाट भी चाऊमीन सब दिया है यहां पे--

यह एक ट्रैक्टर पर लादा जा रहा है जो इसके पीछे जय जवान जय किसान लिखा हुआ है।

मेहंदी आर्डर किया था इसके ऊपर एक लेडिस भी है।